यहाँ पे ये ईस्टेज है इस्टेज अभी तो खाली है बहूत बढ़िया सजावट हुआ है रेड कलर में --

इन लोग अ छठ घाट आएं हुए हैं इन लोग पूजा कर रहें हैं।

और ऊपर में पहाड़ है पूरा पेड़-पेड़ लगा हुआ है एक--

अ दिख रहे है ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे है ।